पर होल्डिंग पे यहाँ पर मेरे को लोग बाइक पे लड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें गार्ड दिखाई दे रहा हैं पास में हमें यहाँ पे एक और वेंडर दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे दुकान दिखाई दे रहे है अंदर सामन लेते दिखा --

यहाँ पर हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पे बोहोत सारी बाइकें दिखाई दे रही हैं। एक आदमी दिखाई दे रहा है। बिजलियाँ खंभें और तार भी --

में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक झंडा दिखाई दे रहा है जो की तिरंगा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें कोई चर्च के सिंबल दिखाई दे रहे है यहाँ पर महे सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमे--

यहाँ पर हमे बड़ा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है जोकि ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। नीचे हमें पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें कुछ लोग पान --

यहाँ पर हमें यह प्लेन का रंग हमें ब्लू और सफ़ेद दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर हमें तिरंगा दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है। यहां पर हमे बड़ा सा बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है। बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमे बिजली का गुच्छा दिखाई दे रहा है। पोल के ऊपर हमे यहा पर रात का समय दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अंधेरा दिखाई दे रहा है यहा पर।